ब्लू और लाइट ब्लू से करा हुआ दिखाई दे रहा है होटल का नाम निर्मला होटल जैसा लग रहा है और उसके पास मैं आइसक्रीम की दुकान भी दिखाई दे रही है ये एक रात की फोटो दिखाई दे रही है।

यहाँ पे वेलकम और ब बहुत सारी डिशो का भी उठा सकते हैं| यहाँ वाट्सऐप नंबर भी दिया हुआ है| यहाँ दो गाड़ी और एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

ये मुझे एक छोटे-छोटे चूजे लग रहे हैं जो एक पोएट्री फार्म की निशानी है| यहाँ पे बहोत से अच्छे चूजे रखे हुए हैं और चूजे खा-खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

लड़को ने व्हाइट और ब्लैक कलर की प पैंट पेहनी हुई है और एक एक ब्लू व्हाइट कलर की पैंट पेहनी हुई है| रेलवे स्टेशन का कलर लाल है।

यहां पे बहुत अच्छे से गुलाब को प_ से सजावट करी गई है यहाँ पे बहुत अच्छी से लाइटिंग भी की गई है ।

यहाँ पे एक ढाबा जैसा कूछ दिखाई दे रहा है जिसपे राज दरबार फॅमिली लिखा हुआ है जहाँ पे लोग आते और जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये दोपहर का फोटो दिखाई दे रहा है।

एक बड़ी-सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है| बिल्डिंग के ऊपर लिखा हुआ है जंगल सफारी | उसके नीचे लिखा हुआ है रियलमी पीले कलर में और उसके अं-नीचे आ रियलमी का छाता भी लगा हुआ है।

ये एक मॉल का और मॉल का और रेस्टोरेंट का फोटो दिखाई दे रहा है जहाँ जिसके नीचे रेयलमि और स्मार्ट स्टोर का भी दिखाई दे रहा है।